भी उठी हुई है कुछ मकान वगैरा बने हुई हैं निचे दीवाल का कलर वाइट --

यहाँ पे चेयर वगैरा भी रखी हुई है और टेबल भी रखी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे कांच भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है | यहाँ पे कुछ बोटल वगैरा रखे हुए हैं |

यहाँ पे दीवाल दिखाई दे रहे हैं जिसपे कलर वाइट और ग्रीन है और कांच भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है | स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है और निचे जमीन भी दिखाई दे रही है |

ये कुछ बॉक्स वगेरा भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं | फिर अलमारी भी दिखाई दे रही है और निचे जमीन दिखाई दे रही है |

यहाँ पे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे घास उगी हुई है | एक गाय भी चरती हुई दिखाई दे रही है और लोहे की जाली भी लगी हुई है |